व्हाइट कलर के प पर्दा पड़ा हुआ है कुर्सी के ऊपर लाइट लगी हुई है ये एक मैट बिछाई हुई है यहां पे प्रोग्राम ए_सी लगे हुए हैं इधर रूम में--

बनी हुईं हैं जो की काफी बड़े- बड़े और ऊँचे ऊँचे हैं दिखाई दे रही हैं।

बहोत सारी दुकानें बहोत सारी घर बिल्डिंगे बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

बस और साधन सब आते जाते नजर आ रहे हैं ऑटो बस।

नारियल के पेड़ लगे हुए हैं वो भी बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं नीचे टाइल्स लगी हुई है काफी सुंदर लग रही है ।

पत्थर बहुत बड़ा पड़ा हुआ है और छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए हैं घास फूस के कटिंग बनी हुई है।

बहुत पेड़ लगे हुए हैं छोटे-छोटे और बड़े-बड़े कटेले पेड़ भी नजर आ रहे हैं पत्थर बहुत दो तीन पत्थर पड़े हुए है बड़े-बड़े ।

बी ब्लॉक ए ब्लॉक लिखा हुआ है।

यहां हॉस्पिटल हुआ हैं हुआ हैं।

मेरे खेत है खेत में मिट्टी और ईंटे निकाले जा रहे हैं।

एक पेट्रोल पम्प बड़े जैसा बना हुआ है --

ये कुछ तार दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा है इसमें एक सूरज नजर आ रहा है जो कि दिखाई दे रहा है लालरी पूरी फैली हुई है आसमान मे।

कुछ पानी नीचे पानी है और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है। ये तार बने हुए हैं तार नज़र आ रहे हैं बहुत बड़े-बड़े से खंभे बने हुए दिखाई दे रहे हैं जो लाइट के खंभे होते हैं।

यह कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है यह कांटा रखा हुआ है इसमें नीचे नीचे सबके नीचे सामान कांटे के नीचे --

बोतल लगी नजर आ रही है सब में सीट है सीट के पास ग्लूकोस की बोतल लगी हुई है नीचे सैनिटाइजर रखा हुआ है कपड़ा भी रखा हुआ है पोंछने के लिए।

हवावाले दो तीन हुए हैं और ऊपर भी बना हुआ है निचे --

ये एक हॉल जैसा दिखाई दे रहा है इसमें दो बेंचें पड़ी हुई हैं जो कि उसमें लोहे और प्लास्टिक की बनी हुई हैं।

पीछे घर बना हुआ है जालीदार बना हुआ है इसमें कुछ लोहे की मशीने टाइप से रखे हुए कुछ कपड़े बने टंगे हुए हैंगर बने हुए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक सामान्य की शॉप है यहां पे इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है।

ये मंदिर बना हुआ है जो काफी बड़ा और काफी सुंदर बना हुआ है मंदिर में सीढ़ियां बनी हुई हैं।

दोनों तरफ पकड़ने वाला है जोकि आराम से आदमी चढ़ के उतर जाए मंदिर में--

एक आगे की तरफ आदमी खड़ा हुआ है एक पीछे की तरफ खड़ा हुआ है।

लगे हुए हैं और हैंगर मे टंगे हुए हैं बहोत सारे अंदर रखे हुए हैं।

कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये कपड़े की शॉप पे लाइट लगी --

लाइटें लगी हुई हैं और उसपे लिखा हुआ सैमसंग डी_जे ।

ये दुकान है मेडिकल स्टोर टाइप से दुकान बना हुआ है इसमें छोटा छोटा केबिन बना हुआ है लकड़ी का--

ये गेट बना हुआ है उसके अंदर एक मूर्ति बनी हुई है।

पार्क जैसा लग रहा है ये पार्क लंबा-लंबा बना हुआ नजर आ रहा है इसके अंदर--

उसी पानी में पानी के पास में एक दीवाल भी बनी हुई दीवाल पे फलने वाला फूल और घास फैली हुई नजर आ रही है।

और पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जो कि व्हाइट कलर के हैं।

गुफा टाइप से बना हुआ है उस गुफे में मंदिर है गुफा में जाते हुए नजर आ रहे हैं दो लोग।

ये घर बना हुआ है जो कि काफी बड़ा और काफी सुंदर घर बना हुआ है उसके बगल मे--

ये एक मंदिर बना हुआ है जिनमें सीढ़ियां बनी हुई हैं सीढ़ियों से जाते हैं लोग मंदिर में पू--

ये एक रूम है रूम बहुत अच्छा और बहुत सुंदर बना है वी_आई_पी रूम बना हुआ है इसमें खिड़की और दरवाजे भी बहुत अच्छे और वी_आई_पी लगे हुए हैं जो कि बहुत --

जो कि काफी सुंदर और काफी अच्छे लगे थे दिखाई दे रहे हैं।

ये घास है बीच में रोड निकली हुई है जो कि काफी प्यारी और काफी --

ये ये शॉप हैं यहां पे ये मार्केट है मार्केट में छोटी-छोटी शॉप सभी लगी हुई हैं जो कि हर प्रकार की शॉप हैं।

सभी शॉप अलग अलग है बहुत अच्छी शॉप है सारा सामान मिल जाता है शॉप सब प्रकार की हैं।

कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है हल्का फुल्का ये --